जैसे की हम यहाँ पे देख सकते है की यहाँ पे हमारे स्क्रीन बोट सामने --

जिसमे हम चाहे तो पेट्रोल भी भड़वा सकते है और देखिये उधर टैंकर भी लगा हुआ है।

आप अभी देख सकते है कि आग का बहुत ही बड़ा एक गोला है जो --

यह एक बहुत बड़ा यूनिवर्सिटी है जो की बहुत ही खूबसूरत दिख रहा है यहाँ पे --

यह तेजी से उगी हुए है।

जो लगता है की आठ-दस के झुंड में खड़े हुए हैं।

यहाँ एक दिख रहा है कि यहाँ पे कुछ बैंक का चीज लगा हुआ है ।

गैरेज की दुकान भी है जिसमें बहुत ही अच्छे दिख रहे है गैरज ।

जिसके घर के अंदर कई सारे चपल्ले फेकी हुई हैं और बगल में एक खिड़की भी है।

कुर्सियां लगाई हुई है ऊपर मे भूरे कलर की एक --

पानी से भरे खेत में एक ट्रेक्टर हरा कलर का घुसा हुआ है जो लगता है कि फस चूका है और उसको निकालने की --

जिसमें एक एक्वेरियम भी रखा हुआ है वहाँ पे एक बोतल है।

म्म गार्ड भी है जोकि बहुत ही टेढ़ा खड़ा है पता नहीं क्यूँ?

और पीछे में ढेर सारी किताबें हैं ऊपर में बल्ब जल रहा है ।